अलवेस्टर की ओर छारा गया है एक कुर्सी भी है एक टब भी है एक हरे कलर के पाइप भी रखे गए हैं।

यह एक हार्डवेयर का दुकान है जिसमें से एक लाइट जल रहे हैं एक ट्यूबलाइट भी है एक एल_इ_डी बल्ब भी है।

बगल में एक पेड़ है उम जो हरे कलर का है बांस से घेरे गए है यह ट्रैक्टर ब्लू कलर का है।

इसमें से बहुत सारे पेड़े रखे गए हैं कुछ पेड़े व्हाइट कलर के हैं और कुछ पेड़े ब्राऊन कलर के हैं एक आदमी पेड़े को बेच रहा है बीच में से उसका मुंह ढका हुआ है।

यह बहुत बड़ा से घर बनाई गई है।

यह एक रेस्टुरेंट है जिसमे से तीन आदमी है तीनो का फेस ढका हुआ है एक आदमी ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यह एक मोल है जिसमे से बहुत सारे कपडे रखे गए है और एक आदमी भी है जिसका मुँह ढका हुआ है।

और बैठने का चेयर भी लगाए गए हैं जो चेयर का सीट ब्लैक कलर का है।

यहाँ छे आदमी भी है जो आदमी जंगल की ओर जा रहे हैं।

बहुत सारे कलर के हैं और बहुत सारे शर्ट भी रखे गए है जो डब्बे में पैक है।

यह एक मंदिर है और यह मंदिर में दो फैन लगे हुए हैं। एक रहने का केबिन है। रहने बैठने सुटने का केबिन है ।

यहां महादेव का फोटो रखे गए हैं और ये ठीक महादेव की फोटो के साइड में एक खिड़की रखे गए हैं जो खिड़की तीन भागों में बंटे हुए हैं और इसका गेट खुला हुआ है।

और आदमी नीले कलर का शर्ट पहने और एक आदमी पिंक कलर का शर्ट पहने हुए हैं।

बाहर में तीन मोटरसाईकल भी खड़े है। जिसमे से एक मोटरसाईकल में एक आदमी सवार हैऔर दो मोटरसाईकल --

बाहर में दो बल्ब जलती हुई दिखाई दे रहे हैं।

और यह बाउंड्री लाइन के भीतर है हाउस जो है व्हाइट कलर के हैं और बहुत सारे दरवाजे भी हैं।